यह एक प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म जहां पर आप देख सकते हैं प्लेटफार्म पर काफी सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

ये एक तलाब है जहां पे काफी सारा पानी दिखाई दे रहा है आजू बाजू आपको काफी सारे पहाड़ दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है पानी काफी साफ़ है जहाँ पे आप देख सकते है।

बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए आपको बाहर एक गेट दिखाई दे रहा है गेट एक लोहे का बना हुआ है इस पर हरे कलर का कलर किया गया है गेट जो कि बंद है गेट के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है।

यहां पर आपको सोफा सोफे के ऊपर कुछ पिलो रखे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर आपको एक टेबल है टेबल पर आपको एक कारपेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

रेलवे पटरियां यहां पे काफी सारी है सामने की और आपको काफी सारी बिल--बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है रेलवे पटरियों के ऊपर आपको काफी सारे रेलवे के तार भी दिखाई दे रहे है।

दो गेट बंद है एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है बाहर की और एक छतरी है छतरी के नीचे एक टेबल आपको कुछ कुर्सियां लगाई हुई है।

ये एक रैलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हे जहा पे आपको कुछ लोग खड़े और बैठे हुए दिखाई दे रहे है।